इसमें कलम और इत्यादि सारे सारा है।

ठीक इसके नीचे बहुत सारे लोग खेल रहें हैं।

इस तस्वीर में पुरानी मूर्तियां रखी गई है जो की पत्थर की है यह किसी म्यूजियम की पिक्चर है। जिसमें गणेश जी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी गई है।

यह एक दुकान है जिसका नाम सना व्हील एलाइनमेंट वर्कशॉप है।

ठीक बगल में एक खिड़की है जिसका रंग उजले कलर का है।

सामने एक क्लास रूम दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे पढ़ रहे हैं।

''इसमें एक मैम है जो की बच्चों को पढ़ा रही है।''

उसके पीछे बहुत सारे तार गए हैं जो की सप्लाई बिजली सप्लाई करता है। इसके बगल में एक पेड़ लगे हैं। वहाँ पे एक घर भी है।

और इसके नीचे एक अंडर ग्राउंड अंडर ग्राउंड भी बना है जिसमे गाड़ी को पार्क किया जाता है ।

इस ठीक इसके नीचे बहुत सारे लोग चहल वहल कर रहे हैं।